और सारी गाड़ियां हीं एक --

बहुत सारी लाइटे लगी हुई है।

निचे घास दिखाई दे रही है।

पेड़ों में और हातों में महावर लगाए हुए हैं।

यह ड्राई क्लीन की दुकान दिखाई दे रही है।

कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

आलू बहुत स्वादिस्ट होता है।